और देख सकते हैं यहां जो मार्केट है काफी अच्छा मार्केट है काफी साफ सफाई के साथ यह दृश्य मिल रहा है दृश्य मिल रहा है|

और काफी अच्छा दृश्य लग रहा है और देख सकते है यहाँ पे जरूरतों के सारे सामान आपको मिलेंगे।

यह एक अपार्टमेंट का दृश्य है अपार्टमेंट के नीचे आप देख सकते है कितना शांति है।

यह दिसंबर का मेला है यहाँ पे बहोत भीड़ होते है यहाँ पे सुबह से लाइन लगता है।